यहां हमें एक घर दिखाई दे रहा है रेड कलर का है और सामने एक ब्लैक कलर का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें व्हाइट कलर से कुछ लिखी हुई है।

ब्लू कलर का है यहां ढेर सारी रंग बिरंगे सामाने रखे हुए कुछ डब्बे दिखाई दे रहे हैं जो रंग बिरंगे है।